लाइट लगी हुई है पीछे की तरफ एक पोस्टर टेबल रखा हुआ है येलो लाइट पेंट कर रखी है।

और ऊपर से पाइप बांध रखा है पीछे वाइट कलर का मकान है।

रखा हुआ है कच्चा रोड है।

ये एक्सप्रेस व्हील व्हील का शोरूम है यहां टायर मिलते हैं चौधरी टायर्स --

दीवार पर ग्रीन गा ग्रास लगा रखी है सारे सेटअप बना रखा है।

ये एक लड़कियों की लाइफस्टाइल कलेक्शन शॉप है।

सामने बड़ी सी सी_एन_जी बना लगा रखी है एक एल_इ_डी लगा रखी है।

दो ब्राउन कलर के हैं डिजाइन वाले। खिड़की में ग्लास लगा हुआ है ब्राउन है। नीचे टाइल्स लगी हुई है।

और सब इसमें रात में घूम सकते है छोटी छोटी घास हैं वॉकिंग के लिए अलग से एरिया बना रखा है पीछे एक घर बना हुआ है।

उनके बोर्ड पे स्टिकरस लगा रखे हैं सामने प्लांट्स लगा रखे हैं घास लगा रखे है एक बड़ा सा आम का पेड़ है।

यहां पे तीन बंदे बैठे है एक आदमी बैठा है दो औरत बैठी है।

और उसपे एक पोस्टर लगा रखा है किसी बाबा का--

फ्रिज रखा हुआ है अपनी जो पत्थर लग रखे है ऊपर ब्लैक छत है।